ये पिक्चर देख के हमें लग रहा हैं कि ये एक--

अ फायर ब्रिगेड की ऑफिस हैं जहाँ पे एक ट्रक खड़ा हैं बड़ा वाला लाल कलर का --

यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि--

जिसमें आप देख सकते हो कि ये नई कार आई हैं रेनॉल्ड काइगर --

तो ये तस्वीर के अंदर एक आदमी खड़ा हैं।

और ऐसा लग रहा हैं यह सुबह-सुबह का नजारा हैं जिसमें लोग अपने--

और इसमें पीछे बड़ी सी एक नाव है जिसके अंदर लोग कुछ ना कुछ ले के जा रहे हैं।

सामने एक ब्लू कलर की चेयर पिन पड़ी हैं और पीछे किले आ एक रेड कलर की भी चेयर पड़ी हैं ।

ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा हैं कि यह किसी एक रेलवे की अ रेलवे स्टेशन की फोटो हैं ।

और सामने आप देखोगे तो एक लड़की अच्छे से कुछ पढ़ रही हैं।

आप इस तस्वीर में देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा--

और यहाँ पे सब लोग सब रिक्शा हैं।

पेट्रोल भरवाने के लिए शायद से जा रहे हैं और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हैं।

खूब सी हरियाली छाई हुई हैं ।

यहाँ पे कई प्रकार के स्लाइड्स हैं ।

और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आचार हैं ।

ये तस्वीर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा--

आप ये तस्वीर देखोगे तो आपको पता चलेगा --

उसमें से वहाँ पे दो पुलिस मैन --

तो आपको पता चलेगा कि ये एक रेलवे लोकल --

यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ हैं ।

और यहाँ पे बहुत सारे झंडे हैं।

कि यह एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर हैं।

कई प्रकार के फूल दिख रहे हैं।

गमले और फूल बेचने वाले की दुकान--

ये तस्वीर देख के मुझे ऐसा लग रहा हैं।

ये तस्वीर देख के मुझे ऐसा लग रहा हैं।

जिसमें इस अ यहाँ पे लोग--

कि ये एक फेडरल बैंक एटीएम का फोटो हैं।

जिस स्टेशन का नाम बोरीवली हैं।

सुबह से लेकर शाम तलक यहाँ पे--

बहुत ही भीड़ रहती हैं जिसके कारण--

यहाँ पे लोग ट्रेवल करते रहते हैं यहां से वहाँ--